जिसमें पेपर्स को काट काट के बहोत सारे चीजे हैं घर के अंदर --

है साइ कोने में एक ए_सी है एक बल्ब जल रहा है एक पंखा है और उधर साइड में ए_सी के साइ बगल में हनुमान जी की--

एक टेबल पे तीन आदमी बैठे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक रोड है चलती फिरती।